सारे सेव को एक के ऊपर एक साथ सजाके रखा हुआ है। कीवी एप्पल बनाना और ऑरेंज है।

यह फॉलो सूर्योदय समे की है जहाँ ये किसी ने अपने छत से इस फोटो को लिया --

चेयर का कलर काला है और इस रूम में चारों तरफ टाइल्स लगी हुई हैं टाइल्स का कलर ग्रीन कलर और वॉल का कलर व सफेद है।

कुछ बास्केट टेबल पे रखे हुए हैं जिसमें बॉक्स में कुछ फल भी हैं।

यह फोटो किसी बंजर जमीन में उगे जंगल की है जहां पर दो दोस्त घूमने आए हैं।

इस मैनीक्वीन के पीछे ढेर सारे कपड़ों को रैक में रखा गया है कुछ वस्तुओं को लटका के रखा गया है।

इस फोटो में हम ढेर सारे फूलों से बने हुए मालाओं को देख सकते हैं।

यह फोटो किसी दुकान में खड़ी लड़की मेनीक्वीन का है जिसने फ्रॉक पहन रखा है जो येलो कलर का फ्रॉक पहना हुआ है उसके छोटे-छोटे बाल हैं।

ले कुर्सियों पर सफेद और गोल्डन कलर का रिबन बंधा हुआ है यह पूरा हॉल जगमग कर रहा है लाइटों से।

यह फोटो किसी बच्चे की है जिस जो गार्डन में लगे झूले में झूल रहा है।

यह फोटो किसी स्कूल में खेल करते हुए बालक बालिकाओं का है जो एक कतार में बैठे हुए हैं।

कुछ बालिकाएं दौड़ रही है कुछ बालिकाएं खड़े हैं और एक महिला अध्यापिका खड़ी होकर गाइडेंस दे रही हैं।